इसमे एक स्टेज बनी हुई है स्टेज पर जो फूल लगे हुए है वो येलो व्हाइट ब्लू एंड रेड कलर के है कुछ ग्रीन भी है।

यह एक कमरा है कमरे का कलर गोल्डन एंड ब्राउन है इसमें एक बेड रखा है उस पर तीन तकिये हैं जो व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन कलर का है।